और यहाँ ती दुकान होती है और ये पंखा लाइट चल रहा है।

और ये बहुत सुन्दर है यहाँ पे लोग पहाड़ है जैसे चल रहे हैं और यह आसमान है ।

थल का बत्तख है यह नीम का पेड़ है अंदर लोग चेयर पे बैठे हैं ।

और यहाँ घर भी है पीछे--

स्प्लेंडर और अपाची जैसी गाड़ियां हैं कार भी हैं।

ये टेबल खाली है यहाँ रेस्टुरेंट जैसा भी है ।

लोग यहाँ पर आते हैं पर अब ये खली है।

माला बनाया गया है मंदिरों में चढ़ाते हैं यहाँ देख सकते हैं तौलिया है ये मार्केट है।

ढोल है हारमुनियम है ये चित्र बहुत सुन्दर बनाया हुआ है।